साथ ही इसके नीचे कुछ फर्श भी पड़ा हुआ है।

साथ ही यहां पर एक डी_सी_एम भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बर्फीली जगह है और यहां पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

और यह व्यक्ति पैसे गिनता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक रूम के अंदर कुछ मशीने लगाई गई है।

यहां पर कुछ वर्कर एक घर को बना रहे है।

साथ में ही पीछे की ओर कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

पीछे कि ओर कुछ सामान भी रखा हुआ है।

साथ ही यहां पर काफी सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

में ही यहां पर एक डस्टबिन भी रखा हुआ है।

और यहां पर कुछ सोफे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक पहाड़ी है जिसमें से दो नहरे निकलती हुई दिखाई दे रही है।

और उसके ऊपर दो टैंक भी रखे हुए हैं।